यह स्कूल में पढ़ाई होता होगा टीचर आता होगा।

इस फैक्ट्री में कुछ बन रहा है जो हमारे लिए यूजफुल ही होगा यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है।

यहां दो लोग काम कर रहे हैं जो की बहुत ही दिन रात एक रात एक करके मेहनत कर रहे हैं और --

पैसे बना रहै हैं और ये दोनों आदमी हमारे लिए कुछ बना रहै हैं जो हमारे लिए--

यह एक एयरपोर्ट है यहाँ बहुत सारे वर्कर है जो कि अपना-अपना काम कर रहै हैं।

और बस का इंतजार करते हैं बस हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते है।

बड़ा है यह पत्थरों से बना हुआ मूर्ति है उसपे वर्कर मेहनत करके यह मूर्ति--

बहुत ही सुंदर है यह हमारे बाल काटता होगा इस साल में बहुत ही--

यह एक बस स्टैंड हैजो देखने में बहुत ही बड़ा है यह स्टैंड देखने में बहुत ही--

बड़ा है इस पेट्रोल पंप में डीजल पेट्रोल हमारे लिए उपयोगी है जो एक वाहन --

बहुत ही अच्छा है यहां पर बहोत ही अच्छा डेकोरेशन किया गया है।

यह एक महिला टीचर है यहाँ पर यह महिला टीचर बच्चो को पड़ा रही है और बच्चे पड़ रहे है मन लगा के करके पड़ते है।

यह एक टेंपो है जो बहुत ही अच्छा दिख रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है।

इस इस इसकी बॉडी बहुत ज्यादा खतरनाक बहुत ज्यादा अट्रैक्टीव दिख सके इससे लोगों को लगे कि यह बोहोत ही अच्छा --